पार्क में काफी सारे पेड़ वैगेरह लगे हुए हैं जोकि पेड़ हैं जोकि काफी सुन्दर हैं।

ये जिम अवार्ड की ट्रॉफियां दिख सकती हैं यहाँ पे जिम जो जिम जिम में बॉडी वगैरा बनाते हैं उनके लिए दी जाती है।

गेट को कई कलर से जो है पेंट किया है जब किया है ये कलर देखिए अब जो गेट --

इस नदी के किनारे पर आप देख सकते है यहाँ पर काफी पेड़ वैगेरह लगे हुए हैं और काफी पेड़ जो हैं यहां पे सुख चुके हैं।

और इस जिम में आप देख सकते है अभी काफी सारी मशीने वैगरह है जो एक्सरसाइज करने के लिए वो जो दिए है आप देख सकते है यहाँ पे।